रेड कलर का कारपेट किसे के नीचे मतलब पिंक है किसी का येल्लो है किसी का ग्रीन है सब में से कारपेट पे बैठ के एक्सरसाइज कर रही है और और ये बहुत खुबसूरत लग रहा है ये भवन देखने में जहाँ ये --